लाल सा ग्रीन सा चीज आदि चीजें रखी हैं बेंच पड़ी है।

पीछे भी लाइटे जल बिल्डिंग भी है।

और पेड़ भी लगे हैं।

ये कैफे जैसा लग रहा है यहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी हैं।

कुर्सियां और कुछ आदमी दिख रहे हैं लाइटें जलती हुई।

यह गुरुद्वारा पंजाबियों का होता है जहां पर साउंड आउंड आदि चीजे रखी हुई है।

यहां पे आप कुछ लोग पूजा करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं।

और बूढ़े अंकल जा भी रहे हैं यहां पर पेड़ पौधे और पीले रंग की वस्तुएं हैं।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

और मस्जिद के आस पास काफी आबादी भी लग रही है।

यह एक मॉल है यहां पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं यहां पे सभी फोर व्हीलर ही दिख रही हैं अह--

ऊपर से भी लिए हुए पीछे नीले शीशे भी लगे हुए हैं व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है।

और कुछ औरतें भी हैं इसमें अह पीछे जंगल जैसा लग रहा है।

यह एक बहोत ही पुरानी ट्रेन खड़ी हुई है यहां पर पेड़ पौधे आदि दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा सजा हुआ है।

अंदर चेयर पड़ी हुई है और टेबल भी लगी हुई है और अंदर वेटर भी है।

और पीछे देखने पे आपको दिखेगा कि गाड़ियां खड़ी हुई हैं और बगल में थोड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक राज भवन है। यहां पर बहोत से लोग आते है और यहां पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे --

और गार्ड साहब का एंट्री करवा रहे हैं यहां पर नीला कलर की औरतें पे टैटू भी बना--

यह कोई इंस्टीट्यूट का गेट है जहां से एंट्री होती है।

जहां पर और गोभी केला तरबूज और पाइनएप्पल बहोत से फल फ्रूट रखे हुए हैं।

यह एक नर्सरी है जहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं।

यहां पर कई प्रकार के फूल पेड़ों में लगे हुए हैं जैसे नीला पीला गुलाबी।

यहां पर कोई फंक्शन चल रहा है जहां ये क्रिश्चियन लोगों का फंक्शन है।

यह एक लाइब्रेरी है जिसमें ब कुछ लोग बहुत से लोग पढ़ने आते हैं लाइब्रेरी में बुक पढ़ी जाती--

जैसे कि गेमिंग जैसे गेम खेलते हैं सिटी में वही सब रखा हुआ है।

है और कुर्सियां पड़ी हुई हैं। यहां पर गेमिंग लैपटॉप वैपटॉप सब मिलते हैं।

यहां पर और सी गाड़ियां भी खड़ी हुई है।